और ये इसमें एक ए.सी. लगी हुई है।

यह एक विशालतम दुर्गा माता का --

ये कैंपस बहुत ही बड़ा है।